यहाँ पर हमें एक सुंदर सा बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

इस शालीमार होटल वाले कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बाहर सड़क पर रखे हुए है।

इस गार्डन में हरे-भरे बड़े झाड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

ये बुक स्टॉल के अंदर रैक्स के ऊपर बहुत सारे --

बैंक के सामने एक छोटा-सा नन्हा-सा बच्चा --

और इस टी.वी. का दरवाजा कने बहुत सारे कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

बस दिखाई दे रहा है। इस बस में --

इस इंस्टिट्यूट का नाम एचपी इंस्टिट्यूट ऑफ हाइयर एजुकेशन है।

लाल रंग वाले और सफेद रंग वाले बैलून से पूरा फंक्शन हॉल सजा दिया है।

पूरी अच्छी तरह से योग कर रहे हैं।

और यहाँ पर बड़े-बड़े दो विंडो दिखाई दे रहे हैं।